आगे में एक घर के आगे कार भी खड़ी नजर आ रही है।

बाजू में बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगे हैं जिस पर कुछ कार की फोटोस वगैरह भी लगी हुई है।

ओ_के डॉक्टर क्लीनिक में लगे होते हैं।

और वह पेंडाल ऊपर से टीन से झका हुआ है नीचे में कुछ सफेद कलर के पर्दे लगाकर उसको सजाया गया है।

यह एक शॉप है जिस पे ठाकरे ट्रेडर्स लिखा हुआ है।